खिड़की लगी हुई है ऊपर बिजली का तार है ऊपर आसमान है।

सूखे हुए पेड़ है और नीचे पत्तियां गिरी हुई हैं।

नीचे घास फूस है छोटे - छोटे पत्थर है पीछे आसमान हे ऊपर ।

पीछे गेट जो है जो चॉकलेटी रंग का है और लोगो लगा हुआ है।

सामने जो है ट्रेन है मालगाड़ी की ट्रेन में जो है --

सामने कर घर के आगे जो है छोटे-छोटे पत्थर है ग्राउंड है।

यहां के जो है बिजली का पोल है पोल के आगे खंभा-सा बना हुआ है जिसमें दो-तीन लाइट लगी हुई है बस दिख रही है मुझे।

काउंटर के ऊपर जो है प्रिंटर रखा हुआ है अच्छी घड़ी लगी हुई हैं।

पोस्टर के नीचे सीढ़िया है नीचे ग्राउंड में छोटी - छोटी हरी घास है पीछे पेड़ है।

घर के ऊपर गुलाबी रंग से पोताई हुआ है।

सामने बिल्डिंग है बिल्डिंग में चार-पांच लाइट जल रही है।

आठ-नौ दिख रहा है मुझे साइड में बैनर है।

सामने पोस्टर लगा हुआ है आयकर विभाग लिखा हुआ है साइड में मोटरसाइकिल का स्कूटी हैं।

ब्लू रंग की है इसके बाद ब्लू रंग का पेंट हुआ है अंदर भी ब्लू रंग का पेंट है हल्का-हल्का।

रैक है रैक के ऊपर जो है तराजू है नीचे नमकीन है बिस्किट है तेल है शायद ये कोल्ड ड्रिंक है।